जो कि सभी इधर-उधर घूम रहे है दो-तीन लड़के है जो कि सामने की और देख रहे है और अपना फोटो ले रहे है पीछे कुछ पेड़ पौधे है पहाड़ में जो कि हर-भरे दिख रहे है।

एक पहाड़ है जो की पत्थरों से बना हुआ है और चारो तरफ पेड़ पौधे और घास लग चुके पहाड़ मे ऊपर पेड़ पौधे भी है और अब जोकी बडे-बडे है।

एक पुल है जोकि बहुत बड़ा है वे काफी ऊँचा पुल है।

सड़क के ऊपर एक बस खड़ा है जो की सफेद कलर का है बस के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए है और कुछ लोग सामने है और कुछ बस में चढ़ रहे है।

सामने कुछ कार खड़ी है और एक बाहर बाइक खड़ी है पीछे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए जोकि हरे भरे है।

नीले कलर का टी-शर्ट पहना है और नीले कलर का बॅग रखा हुआ है कांच का चष्मा पहना हुआ है और बगल मे बहुत सारे झाडीया है जो की हरी बरी झाडीया है।

मकान मे पिले कलर के अंदर लाइट जल रही है और मकान के गेट मे दो रंग के गुब्बारे लगे है जो के लाल कलर के और सफेद कलर के है।